बहुत ही बड़ी खुली जगह है वृक्ष लगे हुए हैं आसमान दिखाई दे रहा है।

सामने से शीशे में वो अपनी सेल्फी ले रहा है लड़का खड़े हो के।

सामने लड़का खड़ा है और वो सामने से खड़ा होकर देख रहा है।

और लोगों उनकी सेल्फियां ले रहे हैं बहोत ही अच्छी जगह है जैसे स्कूल का कोई कंपटीशन होता है वैसे लग रहा है।

बहोत सारी बुक्स है वो देख रहे है वो सामने खड़ा है लड़का--

ऊपर साइडों पे बहोत बड़े बड़े खम्भे है उनमें से धुआं निकल रहा है।